इसमें दो आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिन का समय है।

किए हुए हैं हरा कलर का पेंट हो रखा है दीवार पे।

उसके सामने बड़े सा गेट लगा हुआ है साइड में दो तीन बिल्डिंग दिख रही है।

गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है जिसमें बाहर पट्टी बिछी हुई है लोगों को बैठने के लिए।

कंबल दिखाई दे रहे हैं जो कि पैकेजिंग में हैं।

चौधरी लाल सिंह पेंट्री हेल्थ केयर का बोर्ड लगा हुआ है।

जिनके कलर ग्रीन है टाइल्स का कलर ब्राउन है पेंट का दीवारों का कलर व्हाइट है।

लाल और सफेद कलर के गुब्बारे लगा रखे हैं।

मंदिर है मंदिर में काफी सारी मूर्तियां दिखाई दे रही है जोकि कुबेराय की है मां लक्ष्मी की है।

लाइटिंग की हुई है इस मंदिर को सजाया हुआ है नीचे इस की प्लेटों पे नाम लिखे हुए हैं।

टेंट से डेकोरेट किया हुआ है जहां का--

और टाइल्स का रंग ग्रे है दिन का समय है लाइट ऑन है।

दो टेबल हैं दो चेयर हैं दो कंप्यूटर है।

सब्जी मंडी दिखाई हुई है इसमें हरी मिर्च--

जिसमें लेडीज के सूट एंड गर्ल्स के टॉप कुर्ती वगैरा टंगी हुई है।